गेराज में लोग आपनी गाडियों की सर्विसिंग वो अपने गाड़ियों में जो भी मेंटेनन्स का काम होता है वो करवाने आते है ताकि उनकी गाडी का एवरेज और लाइफ बढ़ सके ।

वो लोग इस ट्रैड मील का इस्तेमाल करते हैं इसकी गति आप अपने हिसाब से सेट करके --

और इनका पालन पोषण और इनके रहने की व्यवस्था पूरी रूप से गोशाला ही करता है।

और मोर एक सुंदर पक्षी हैं लोग कहते हैं की इसका सुन्दर्य का कोई मोल नहीं।

फल एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों के रोजाना दिनचर्या का एक इंपोर्टेंट आहार है।